सामने एक रोड है। उसके बाद एक बिल्डिंग के आगे पार्किंग बना रखी है। जिसमे एक स्प्लेंडर खड़ी है। एक जुपिटर है। एक अकटिवा फाइव जी है। पता नहीं सिक्स जी है। फिर इसके बाद ऐच_ऐफ डीलक्स है। कुछ बाइक और आदमी है जो कि ब्लू शर्ट डाल के गाड़ी चला रहा है।

सब यह आई थिंक किसी के मरी से एक दो तीन चार बंदे या जोकि--

फिश ही फिश है चारों तरफ फिश ही फिश --

ये एयरपोर्ट का सीन है फ इस इसका नाम है फ्लाइट का नाम इंडिगो बहोत अच्छी फ्लाइट है कॉस्टली फ्लाइट है।